नीचे की तरफ हमें टेबल दिखाई दे रही है और अगर बगल में हरे रंग की कुर्सियां दिखाई दे रही है।

बहोत सारे किताब कापी रखे हुए हैं और कंप्यूटर भी रखा हुआ है।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

सामने की तरफ बहुत सारे स्कूटी रखे हुए हैं और बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं।

दूर दूर तक पूरा बड़ा सा ग्राउंड ही ग्राउंड है।

दुकान में बहोत सारे कपबोर्ड बने हुए हैं।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

उसके हाथ में एक पर्ची है नीचे की तरफ में बहुत सारे सीमेंट से बने हुए कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे अलग अलग शेप बनाए गए हैं क्यूब बनाए गए हैं हेक्सागन बनाए गए हैं पेंटागन बनाए हुए हैं।

इस दृश्य मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ कुछ कस्टमर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने उजले रंग की शर्ट पहनी हुई है और कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिसे गाड़ी खरीदी है।

नीचे की तरफ हमें सड़क दिखाई दे रही है जो आगे की तरफ जाती है।

इसके ऊपर स्तम्भ बना हुआ है और नीचे की तरफ मार्बल से ऊपर से बहुत किए गए हैं।

सामने के तरफ एक एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसकी फोटो घिंची गई है और उसने टी शर्ट पहनी हुई है।

इस दृश्य में हमें कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं उन सभी लोगों ने हाफ शर्ट नहीं तो हाफ टी शर्ट पहनी हुई है।

दुकान के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है।